इस ऊपर दिए गए चित्र में रेल की पटरिया दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में बहोत सारे खिड़कियां नजर आ रहे हैं।

ऊपर दिए गए चित्र में बहोत सारे केक नजर आ रहे हैं।

इस छवि में दो घर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिए गए चित्र में बड़े बड़े लोहा दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिए गए चित्र में खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिए गए तस्वीर में दो विशाल पेड़ नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर एक झरने की है।

इस तस्वीर में एक सुंदर सा गेट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में कार दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिये गए पिक्चर में रिक्शा और बाइक दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कार दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिए गए चित्र में बहोत सारे आदमी इंडिया का झंडा लेके खरे हुए हैं।

इस चित्र में एक सुंदर सा गेट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक वॉचमैन में नजर आ रहा है।

इस छवि में एक टी_वी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में वॉल दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में एक बस स्टैंड नजर आ रहा है।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

इस तस्वीर में एक रथ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक छोटा सा बैग रखा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर दिए गए चित्रों में बहुत सारे हैंगर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में आदमी बैठे हुए हैं।

इस छबि में बहोत सारे स्कूटर बाइक नजर आ रहे हैं।

इस छवि मे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक सोफा नजर आ रहा है।

ऊपर दिए गए चित्र में एक ट्रे नजर आ रहा है नीचे।

ऊपर दिए गए चित्र में एक मैजिक और एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

इस छवि में खुला आसमान नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक लाइन का पोल नजर आ रहा है।